एक लोग बैठे हुए हैं तथा एक लोग काउंटर से सामान ले रहे हैं।

इस चित्र में हमें कई महिलाएं और कई छोटे छोटे बच्चे आते जाते दिखाई पड़ रहे--

एक बोर्ड भी रखा हुआ है नीचे इलेक्ट्रीशियन बोर्ड भी लगे हुए हैं।